खूबसूरत है और ये बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसके अंदर --

यह दृश्य किसी भव्य मंदिर का है। यहां ढेरो श्रद्धालु --

फूल-पौधे काफ़ी शानदार है और इस ये जगह बहोत ही सुन्दर और साफ़-सुथरी है।